यहाँ पर लिखा हुआ है दीवार पर कुछ लिखा हुआ है जो मिथिला न रहे मंदिर में भाषा में कुछ लिखा हुआ है।

दिया हुए है बगल वाले पेड़ पौधा दिए हुए है लाइट का एक टावर दिख रहा है और एक स्पीकर लगे हुए लाइट के पास दिख रहा भरे पड़े एक ब्लू कलर पोस्टर --